शेरनी चुपचाप आराम से बैठी हुई है और वह पिंजरे में बंद है।

यह एक विद्यालय के अंदर का दृश्य है।

बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है तथा चार पहिये वाहन भी खड़े है। यह जेएल पब्लिक स्कूल इंटरमीडिएट का है।

यहां पे गोल्ड रंग की प्रधानता है। नीले रंग की लाइटें जल रही हैं।

इसके दरवाजे पर मेन एंट्री गेट पर एक --

जो कि उ घाट द्वारा रोका गया है जिसे रस्सी द्वारा बांधा गया है। या --

यह एक सफेद रंग की बिल्डिंग का दृश्य है। जिसके सामने बहुत कम घास वाली जमीन है। यहां पे कुछ लोग --

झरना काफी ऊपर से पहाड़ों के बीच में से नीचे गिर रहा है। यहां पे बहुत सारे पत्थर भी है और हरियाली भी है धन्यवाद।

यह चित्र एक सब्जी की दुकान का है यहां पे बहुत भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे बहुत सारे लोग सब्जी खरीदने आए हुए हैं।

जो कि पहाड़ों के बीच में स्थित है। पहाड़ों के ऊपर बहुत ही हरियाली है। झरना बहुत ही स्वच्छ व सुंदर लग रहा है।

यह एक दिल को छू लेने वाला दृश्य है। इस दृश्य में एक झरना --

तथा चट्टाने बहुत ही अच्छी तरीके से पानी के द्वारा काटी गई हैं।

और एक कई सारे पेड़ भी लगाए गए हैं ये अकेला बोहत ही सुंदर लग रहा है।